इसमें हमें बाहर की तरफ एक--

कर्टनस भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

किताबों की शॉप दिखाई दे रही हैं।

मटेरियल अंदर की तरफ रखी हुई नजर आ रही है।

बहोत सारे टू व्हीलर की पार्किंग दिख रही है और यहां पर--

यहां पर और भी ऑटो खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें दो पक्षी दिख रहे हैं।

यहां पर ऊपर की तरफ तरह तरह के जानवरों के--

और यहां पर कुछ लोग भी हमें नजर आते हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक वाइट कलर की बाइक भी खड़ी हुई--

दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ नजर--

दिखाई दे रही है जो कि फोटो लेते हुए नज़र आ रही--

अलग तरीके के तंबू भी बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमे एक रोड दिख रही है इस रोड पर कुछ गाड़ियां हमे नज़र आ रही है।

मोटा झरना नीचे की तरफ बेहता हुवा--

ये सभी महिलाएं यहां पर पूजा करती हुई दिख रही हैं।

यह एक मार्केट की इमेज है जहां पर अलग अलग तरह की दुकाने हैं जहां अलग अलग तरह के --

एक शॉप दिख रही है जिसमें कि बहोत सारे तरह तरह के वेफर्स के पैकेट्स यहां दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर इन्होंने कोई पेंटिंग किया हुआ है।

फैक्ट्री ऑफिस यहां दिख रहा हैं जहां पर--

अह दो इलेक्ट्रिसिटी की मशीनें हैं जिसमें कि--

गुब्बारे यहाँ हार्ट शेप के लगे हैं रेड और वाइट कलर के इन गुब्बारे का कलर है।

और पौधे दिखाई दे रहे हैं।